यहां पर हमको एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे बैग टंगे हुए है और बहुत सारे पर्स यहां पे टंगे हुए है।

उम्म जरकारी टाइप रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ लोग भी हमको खड़े हुए दिखी दे रहे हैं।

एक यहाँ पर धूप की रोशनी आती हुई हमको दिखाई दे रही है और नीचे इस तस्वीर पर दो हज़ार बाईस भी डाला हुआ दिखाई दे रहा है।

वहां पर हमको एक गुफा टाइप दिखाई दे रही है।

यहां पर हमको एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में यहां पर दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है मंदिर में ऊपर ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है उसमे शिव जी की पिंडी हमको दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमको एक दुकान टाइप दिखाई दे रही है। इसके बाहर बहोत सारी यहाँ पर स्टूल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।